तमे हमको एक पापर क्राफ्ट दिखाई दे रहा है सभी बच्छे आपने पेपर्स लेकर क्राफ्ट कर रहे है।

यहाँ के ऊपर खड़ा होकर उस नदी को देख रहे है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और यहाँ बहुत पीस मिलता है।

चित्र में हमको एक ह्यांडिक्राफ्ट की दुकान देखने को मिल रहा है।